उसके साइड में दो इंसान है जो खाना दे रहे हैं और उसके साइड में फूल पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पर ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जाती है।

यह एक की दुकान है जिसमें एक बंदा खड़ा है और यहां पर--